दुकान के बगल में एक दरवाजा हैजो बंद है।

रोड में बहुत सारा भीड़ है।

ये एक ऑफिस है ऑफिस में एसी लगा हुआ है।

एक खिड़की है जिसपे एक पर्दा टंगा हुआ है।

दो मूविंग चेयर सामने रखा हुआ है।

एक पेटीएम का स्कैनर रखा हुआ है।

ये एक पर्यटन स्थल है।

यहां पे बहुत सारे गमले में छोटे-छोटे पौधे लगाए हुए हैं।

बहुत बड़ा महल दिखाई दे रहा है।

शॉपिंग मॉल को बलून से सजाया गया है।

बहुत सारे हैंगर में कपड़े लगाए हुए हैं।

एक लड़का खड़ा होकर के देख रहा है।

बलून पीला और लाल कलर का है।

बहुत सारे छोटे-छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

केक की दुकान में बैलून सजाया हुआ है।

गार्डन में बहुत सारे छोटे-छोटे पौधे लगाए हुए हैं।

सभी पौधे छोटे-छोटे गमले में हैं।

एक अमरूद फरा हुआ है।

पीछे बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक पार्क का बाहर का चित्र है।

एक दरवाजा लगाया हुआ हैजो काला कलर का है।

बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ऑफिस में सबका अपना-अपना केबिन बनाया हुआ है।

बहुत सारे फाइल और बुक भी रखे हुए हैं।

सभी कपडे सरियाकर रखे है।

बहुत सारे लाइट जल रहे हैं।

दो ए_सी भी लगाया हुआ है।

बहुत तरह-तरह की लाइटें जल रही हैं।

आगे में बैठने के लिए सिल्वर की कुर्सी रखी हुई है और पीछे में लाल कलर की कुर्सी है।

गाड़ी के पास एक लड़की लाल कलर का जैकेट पहनकर खड़ी है।

ये एक सजाने के सामान का दुकान है।

बहुत सारे बेंच लगे हुए हैं।

एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

पंखे चल रहे हैं एक एसी लगा हुआ है।

चार पानी का बोतल भी दिखाई दे रहा है।

कुछ हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक डाइनिंग टेबल लगा हुआ है।

आईना में लाइट का रोशनी आ रहा है।

अंदर काफी भीड़ नजर आ रहा है।

डांस क्लास में बहुत सारे बच्चे डांस सीख रहे हैं।

लाल वाली बड़ी मिर्च रखी है।

ट्रांसफार्मर के पीछे एक बोर्ड लगाया हुआ है।

ये कच्चा रोड है।

इसके नीचे एक लव बाइट्स करके--

अंदर आने के लिए एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

पार्किंग एरिया बनाया गया है।

गैरेज में दो गाड़ी लगी हुए हैं।

और बहुत से लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं।

मॉल के अंदर जाने के लिए सीढ़ी बना हुआ है।

सभी सीढ़ी पे फूलों से सजाया हुआ है।

दरवाजे के पास एक गार्ड खड़ा है।

रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा है।

रेस्टोरेंट में एक लड़का भी खड़ा है।

बैठने के लिए सोफे लगे हुए हैं।

एक पानी का डब्बा भी रखा हुआ है।

इस पे गिव भी लिखा हुआ है एक जगह लव लिखा हुआ है।

साथ में एक पंडित जी भी है।

छोटे-छोटे बच्चे लोग दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं।

डीजल पेट्रोल रखा हुआ है।

एक काउंटर भी रखा हुआ है।

जिस पे एक कार्टून भी रखा है।

नीचे बैठकर बहुत लोग देख रहा है।

अपार्टमेंट में एमटी मार्ट लिखा हुआ है।

लाइट जल रही है सभी लोग लाल कलर के कपड़े पहने हैं।

पीछे भी बहुत सारे झूले हैं।

चलने के लिए रास्ता बनाया हुआ है घास निकले हुए--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

एक ट्रेडमिल भी रखा हुआ है एक डंबल है।

बड़ा-बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

ये एक रोड है रोड के किनारे दुकान है।

पीछे बड़े-बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

डांस क्लास में बहुत सारे बच्चे डांस सीख रहे हैं।

गली के बगल में एक मस्जिद है।

एक वाइट कलर का भी घर दिखाई दे रहा है।

आगे में एक खुला हुआ बाउंड्री है।

सोफा में पेंट करके धूप में रखा गया है।

पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

छोटे-छोटे घास जमे हुए हैं।